फुट्टे भी रखे हुए हैं यहाँ पे लल लाभ जाँच यहाँ पे टेस्टिंग किया जा रहा है ब्लड टेस्टिंग बहुत सारे टेस्टिंग यहाँ पे करते हैं यहाँ पे पेन भी है।

वाइट रेड कलर की फूलों को यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग छोड़ी गई है फायर एक्सटीन्गुइशेर व सिलेंडर भी यहाँ पे रखा हुआ --

उगी हुई है और यहाँ ऊपर चिड़ी भी दिख रही वैरा लाइट का फोकस भी है यहाँ ऊपर आसमान यहाँ पे दिख रहा है।

ये एक पहाड़ी इलाका है और ये ट्रेन में लोग जा रहे हैं बैठे हुए लोग यहाँ पे सीटों पे अपने अपने --

टिफ़िन बॉक्स भी है यहाँ पे बाजू गोगल ग यहाँ पे नो स्मोकिंग का लगाया हुआ है।

बाहर पीने के डब्बे रखे हुए हैं पानी के जग है गिलास पड़ा हुआ है बहुत सारे यहाँ पे लाइटिंग्स है फ्याना है यहाँ पे --

यहां पे बहुत सारे पियानो हैं एल_ई_डी बॉल से यहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं।

ये एक यहां पे दुकान दिख रही है बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है नीचे गिरा है।

यहाँ पे बहुत सारे माले के बिल्डिंग्स है यहाँ पे पानी भी दिख रहा है और उसमें रस्सियाँ भी यहाँ पे --

डाल के इन्हें लाया गया छोटे बड़े सभी यहाँ पे मछलियाँ हैं इनके पास चाकूआँ भी यहाँ पे बड़े से फुटों में भी इनको डाल के ले गया जाता है।

हार्ट शेपस बनाए गए रेड कलर से और लकड़ियों में भी छुबा के रखे गए --

ये एक यहाँ पे बहोत सारे बोटलियों में केमिकल रखा गया है यहाँ पे बहुत सारे सेंटया सै सेंट की दुकान है यहाँ पे --

सोफा सेट पे और यहाँ पे बहोत सारे शेल्फ मे बहोत सारे बोटलिया है इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट समान है यहाँ पे --